तू ही तू कसम खाई है। इधर इटा है। इधर भी है टेबल इटा पात के रखा हुआ है। इतना सुंदर रखा हुआ है। बहुत अच्छा रखा हुआ है।

यहां पे देख -देख के हरा- हरा। यहां पे हरियर- हरियर सब दिखत है। कितना सुंदर दिखत ना पूछी। बहुत सुंदर दिखतई। इ इतना अच्छा लागता।

गंगा जी के पनिया लहर मारे ये देखिये गंगा माई के पनिया लहर मरत--

यहा पे देख रहे है ये कसरत में अपना बॉडी फिटनेस बनाते है सारे बच्चे ये लड़का हो या लड़की गर्ल हो या बॉय ये अपना फिटनेस पूरा एकदम बनाते है। इतना अच्छा बनाते है लगता है की एकदम फिटनेस ही रहेगे हम।